यह आप देख सकते हैं की यह पिक हाईवे का है क्युंकी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है के एक रेड कलर का फूल है और इधर ब्लू कलर का वो बहु आई मीन घर पीला टाइप का बना हुआ है।

और फिर से स्टेशन के उस पार भी स्टेशन है प्लेटफार्म यह कौन-सा प्लेटफार्म है यह हम नहीं बता सकते नीचे रेड कलर का डस्टबीन भी है वहाँ पे ।

और उस साइड से जो पूल दिख रहा है ये काफ़ी अम पूल जो है जो भी ये ट्रैक के ऊपर से जाता है और इसे --